यहाँ पर गार्ड के लिए एक चेयर रखी है। जहां पर वाहन पर निगरानी रख --

यह येलो कलर की दीवाल से पुता हुआ है।

यह एब बहुत ही सुन्दर तलाब है।

यह एक भारतीय डाक इंडिया पोस्ट घर है।

यह शॉपकीपर का नाम मनोज है।